और लाइट बल्ब भी है जो की जला हुआ है और घड़ी भी है।

एक चेयर भी है उसका उस पर में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

यहां में बहुत सारा इंसान चल रहा है।

ये तस्वीर में किसी सीफूड का मार्केट दिखाया गया है और यहां में अलग अलग किस्म का मछली चिंगड़ी मांस सब है।

सामने दो अंटी है जिनका शकल को ब्लर किया गया है और एक अंकल भी दिखाई मिल रहा है लेकिन उनका शकल को ब्लर नहीं किया गया है।

ये चट्टान का आमने सामने में बहुत सारा छोटा छोटा ग्रास और पेड़ लोग भी है।

और लाइट भी दिखाई दे रहा है जल के।

साइड में चम्मच चाकू लोग भी है।

एक ठो काला कलर का प्लेट खाली से भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शॉप दिखाया गया है।

स्टेज पे उठने के लिए एक सीढ़ी भी बनाया गया है और बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर भी रखा हुआ है।

नीचे में बड़ा सा नदी भी दिखाई मिल रहा है।

ए_टी_एम मशीन का स्क्रीन में क्या क्या भी लिखा हुआ है।

तस्वीर में एक छोटा सा रिजॉर्ट है।

बहोत सारा पेड़ उगे हैं और आसमान भी दिखाया गया है।

एक टेबल भी है उसका ऊपर में टिशु से रखा हुआ है।

और फैन भी दिख रहा है और ए_सी भी लगाके है यहां में।

इस तस्वीर में मुझे एक टीना और बंबू से बना हुआ रूफ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक मछली मार्केट दिखाई मिल रहा है।

ये तस्वीर में ग्राउंड दिखाया गया है और ये ग्राउंड में बहुत सारा जंगल उगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाया गया है।

और नीचे में छोटा छोटा घर लोग भी है और बहुत सारा इंसान भी है।

गाड़ी लोग भी दिखाई दे रहा है और सामने में ही इंडिया फ्लैग भी दिख रहा है।

ये रूम का कलर जो वाइट पिंक एंड ब्लू से है।

इलेक्ट्रिक पोल भी है और खुला आसमान भी है।

एक लाल कलर का गाड़ी भी है चर्च के सामने--

खिड़की भी दिख रहा है खिड़की में पर्दा भी लगाया हुआ है।

और पूरा आसमान भी दिखाई मिल रहा है जो कि वो बादल बादल से हैं।

का चारो ओर मे बहोत अंधेरा है।

इस तस्वीर में बड़ा सा ग्राउं दिखाया गया है।

और ये ग्राउंड का सामने मे ब्लू कलर का एक घर भी बनाया हुआ है।